और बो बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं बाहर बाउंड्री के बाहर अ जोकि बाउंड्री की दीवाल पर अ कुछ-कुछ लिखे हुए --

स्टूडेंटस योगा मुद्रा में बैठे हुए हैं अपने-अपने योगा मेट लेके आसन लेके बैठे हुए हैं अ गर्ल्स योगा पो --

यहाँ पर एक चर्च है और चर्च में प्रभु इशू की मूर्ति लगी हुई है पीछे प्रभु इशू का अ मूर्ति लगी हुई है स्टैचू बना हुआ है क्रॉस पर।

यहाँ पर अ एक अम ग्राउंड पड़ा है प्ले ग्राउंड पड़ा है जहां पर कुछ स्कूली बच्चे हैं।

और यहाँ पर एक जो ओनर है वो बैठे हुऐ हैं और वो अपनी सेल्फी ले रहे हैं। उनके सामने कैलकुलेटर सिस्सज़र --

यहाँ पर एक रोड है और रोड बनी हुई है और रोड के किनारे से कुछ ब्रिज़ बना हुआ है। एक ब्रिज़ बना हुआ है जो कि बहोत बड़ा ब्रिज़ है।

और जिस पर जाने के लिए स्टेयर वगैरा लगी हुई हैं और ये जो रोड है जिस पर कार वगैरा जा रही है कुछ स्कूटी बाइक --

यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है और जिसमे से डक के शेप स्लाइड बनी हुई है।

अ जोकि अलग-अलग ब्लाक में बना हुआ है बहुत सारे अ मड़िया टाइप की बने हुए हैं अलग-अलग ब्लॉक में बने हुए हैं मंदिर और आगे कुछ मइया जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं।

आं जिसमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है। एक बाउल टाइप का रखा हुआ है। एक लैंप टाइप का रखा हुआ है। मतलब वो कुछ आइटम्स रखे हुए हैं।

ह पेंट किया हुआ है और यहाँ पर दो अ अ कार खड़ी हुई है और कुछ बाइक वगेरा खड़ी हुई हैसाइड में कुछ पेड़ लगे हुए हैपेट्रोल पम्प क्व साइड में कुछ पेड़ वगेरा लगे हुए हैबहुत सारे पेड़ हैं ।

यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प है और पेट्रोल पम्प पे कुछ गाड़ियाँ वगेरा खड़ी हुई है एक बड़ी सी ह-ह--